चार पांच स्कूटी है चार पांच बाइक है और यह बीकानेर का वहां मॉल है।

बाहर गाड़ियां दिखाई दे रही है एक भारत का झंडा लहरा रहा --

और कुर्सियां लगोडी है गली गड़ी लाइट लगौड़ी है अंधेरी रात है यह वो एक होटल है।

और हम काफी लोग इकट्ठा हुए हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे मेले में घूम रहे हैं।

बैंक खुला हुआ है ए_टी_एम भी खुला है।

तरबूज खरबूज पपीता अंबा संतरा सेव अंगूर कीविया --

थेपला कुर्सियां लगी हुई है।

वहां पर लाइटर मिलते हैं और झंडे पे छोया भी डब्बू भी --

दो तीन तजुरे लगी हुई है तजुरे गोल गोल पक गए हैं।